यहां एक टेलर्स भी है जिसका नाम स्टाइल है।

यह एक बहुत पुराना मस्जिद है चोंगा भी लगा हुआ है।

डस्टबीन है शटर का गेट है।

बादल छाए हुए हैं घर में खिड़कियां भी हैं।

एक तोता दूसरी ओर देख रही है बैठने के लिए पाइप दिया गया है।

टेबल भी है गेट लगी हुई है लाइट जल रही है।

एक दुकान है बहुत सारे सामान है।

पंखा भी लगी हुई हैं बहुत सारे सर्फ एक्सेल भी हैं।

शीशा का गेट लगा हुआ है कुछ टाइल्स में लगा हुआ है।

इलेक्ट्रिक तार भी है चोंगा लगा हुआ है।

प्रोजेक्टर लगा हुआ है चल रहा है।

कस्टमर टाइल्स भी लगी हुई है।